यहाँ पर बच्चे लाइन से बैठे हुए दिखाई दे रहे है और उनके बेंच पर बहुत ही ज्यादा चीज दिखाई दे रही है ।

दिखाई दे रही है कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है और कुछ पतले-पतले खंबे भी दिखाई दे रहे है जिन पर ब्लैक कलर की केबल --